नीचे जमीन में बहुत सारे कचड़े फैले हुए हैं।

यह एक पुराने किले का दृश्य नजर आ रहा है।

यहां कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो साथ में ट्रॉली बैग भी रखे हैं।

यहां बहुत सारे बाल्टिया में फूल रखे हुए दिख रहे हैं।

सामने बड़े अक्षरों में होटल राज लिखा हुआ है।

कुर्सी के बगल में अग्निशामन यंत्र रखा हुआ है दीवाल में गेट भी बने हुए हैं।

यहां पे अलग अलग प्रकार की साइकिले रखी गई है जैसे छोटी और बड़ी।

नीचे फर्श पे हरे रंग की कारपेट बिछाई गई है।

बाहर कुछ दो पहिया वाहन भी खड़े हैं।

यहां एक महिला और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के बाहर वाइपर टंगे हुए हैं।

रैक में बहुत सारी सामाने रखी है जैसे पेप्सी के बोतल हॉरलिक्स शैंपू पेस्ट अन्य प्रकार।

यहां बहुत अच्छी तरह से सामान को सरिया कर रखा गया है।

प्रत्येक वाइब्रेटर मशीन रखा हुआ है।

यह चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ है सामने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगे भी दिख रहे हैं।

यह एक हाईवे का दृश्य दिखाई दे रहा है जिस पे डिवाइडर भी बना हुआ है।

पीछे ग्राउंड में हरी हरी घास उगी हुई है।

यहां काफी अच्छी धूप आ रही है।

यहां बिजली के खंभे से तार क्रॉस तो होते हुए नजर आ रहे हैं।

मस्जिद पे के ऊपर गोल गुंबज बना हुआ है जिसमें लाउडस्पीकर लगे हुए हैं।

सामने कॉलम में विडोल लिखा हुआ है।

यहां काफी अच्छी धूप आ रही हैं।

यह एक बाइक सर्विस सेंटर का दृश्य नजर आ रहा है सामने एक पोस्टर लगे हुए है जिसपर हिंदुस्तान बाइक सर्विस सेंटर लिखा हुआ है।

यहां कुछ दो पहिए वाहन भी खड़े हुए हैं सामने लोहे के बाउंड्री बनाई गई है।

अंदर बहुत सारे रैक बने हुए हैं जिसमें सामान रखे गए हैं।